और डील्स इन फोटो स्टेट स्टेशनरी आर्ट एंड क्राफ्ट बुक बाइंडिंग ऑफिस स्टेशनरी मास्क टॉयज एंड गिफ्ट आइटम लिखा हुआ--

सेल्फ पर बहोत सारी मूर्तियां पड़ी हैं।

एक आग बुझाने वाला लगा हुआ है।